और कुछ पौधों को तो लटकाया भी गया है और ऊपर की ओर एक--

बहुत सारे रंग बिरंगे हरे हरे फूल पौधे उग रहे है।

ट्रांसपेरेंट ग्लास डोर से बना हुआ है और यहां शॉप के अंदर बहुत लोग दिख रहे हैं।

यह एक खूबसूरत बेड का चित्र है जहां पर बहुत रंग बिरंगी अलग अलग--